आप यहाँ पे एक हॉल देख रहे होंगे। यहाँ बहुत बड़ा हॉल है। यहाँ पे बहुत सारे --

यहाँ पे काफी सुन्दर वातारण है। यहाँ पे पूरी तरह शान्ति का माहौल है।

यहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध है। यहाँ का जो लोग भी यहाँ पे घर बनाये वो लोग बहुत ही सूखमय के साथ ही जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं।

बाहर को जितने भी गेट हैं सभी खोल दिए गये हैं। पानी ज्यादा हो जाने के कारन सारे दरवाजे भी जितने भी इसके बने हुए हैं। सभी को खोल --

घर में बहोत बड़ा एक पार्क है। इस पार्क मे रोड बनाया गया है और चारो तरफ पेड़ पोधे लगाये गये है और यहाँ का वातावरण --

चीजें मिलती हैं। आप आम आके खाना भी खा सकते। इसमें सभी तरह के --

आप यहाँ पे एक मंदिर देख रहे होंगे। इस मंदिर के चारों साइड पूरा कार्पेट बिछाया गया है।